पेड़-पौधा है और एक आदमी सेल --

राधा कृष्णा है और राधा कृष्णा मुकुट पेहने हुए हैं। पे फूल है।

और फूल है बाँसुरी है ।

पेड़ है पौधा है बहुत सुंदर लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल है।